ये रूम पे एक बड़ा सा कांच का गेट भी दिखाई दे रहा है।

इसमें एक दुकान के अंदर डब्बों में सामान रखा हुआ दिख रहा है।

इसमे एक बैठने के लिए बहोत सारे सोफे दिख रही है।

जहां पे एक नीले कलर के और वाइट कलर के लगाए हुए है।

साइड में और दीवार पे पोस्टर भी लगे हुए हैं।

मॉल के अंदर काफी सारा सामान भी रखा हुआ है।

उसमें बहोत सारी सब्जियां रखी हुई दिख रही है।

सड़क के किनारे एक गार्डन में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है।

एक नीले कलर का गेट भी लगा हुआ है।

ए_टी_म के बाहर काफी सारे लोगों की लाइन भी लगी हुई है।

लाइब्रेरी में काफी सारी किताबें भी रखी हुई हैं।

इसमे एक रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीर दिख रही है।

ये मंदिर के बाहर लोग बैठे हुए हैं।

मंदिर में काफी सारी लाइटे भी जली हुई है।

एक सब्जी की बहोत बड़ी दुकान दिख रही है।

स्टैचू के बगल में दो छोटे छोटे स्टैचू के डिजाइन भी बने हुए हैं।